चित्र में एक घर दिखाई दे रहा है बड़ा सा।

और यहां पे ढेर सारे चीज को रखा गया है।

ये हॉस्पिटल बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है और यहां पे--

यहां पे खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक सर्विस की कंपनी दिखाई दे रही है।

बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है एक कार है।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

इस चित्र में ढेर सारी मछलियां दिखाई दे रही है।

इस इसमें एक आलमीरा है।

कुछ रेड कलर से कलर किया गया है वायरिंग लगी हुई है इसमें।

और इस रूम में चार लड़कियां डांस कर रही है।

यहां पे ढेर सारे लोग पीले वस्त्र में हैं और यहां पे मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे ढेर सारे रेड कलर के चेयर्स लगे हुए हैं।